पहाड़ दिखाई दे रही है गाड़ी दिखाई दे रही है।

और बाहर भी सामान रखा हुआ है। स्कूटी भी है।

ये एक बहुत बड़ा जिम है।

अलग-अलग डिजाइन के बैग टंगे हुए हैं और यहां पर बोहोत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है।

बोर्ड लगा हुआ है और बर्तन रखे हुए हैं यहाँ पर। अलग-अलग तरीके की मछलियाँ हैं।

पूरा व्हाइट कलर का रूम है खिड़कियाँ लगी हुई --

ग्रीन कलर की ऑरेंज कलर की अलग-अलग तरीके की पर्से हैं। ऊपर चद्दर लगी हुई है। यहां पर बोहोत सारे लोग भी खड़े हुए हैं।

अलग-अलग तरीके के पेड़ लगे हुए हैं। पूरा व्हाइट कलर का घर है।

बहुत बड़ा छत है खभे लगे हुए हैं बहुत सारे लोग हैं|

ये बोहोत बड़ा ग्राउंड है। ग्राउंड में अलग-अलग तरीके के बच्चों के खेलने के झूले हैं।

खुला है पीछे उन --

पंख लगे हुए हैं। एसी लगा हुआ है। खिड़कियां हैं। पर्दे लगे हुए हैं। टीवी लगी हुई है।